एक आदमी टेबल पर खड़ा होकर कुछ पेपर्स पर लिख रहा है।

यहां रेट वाइट कलर से कॉटन भी आसपास काफी लगे हुए हैं एक आदमी पीछे--

सामने वॉल पर एक बड़ा क्रोस बना हुआ है। उस क्रोस पर यीशु मसीह की तस्वीर लगी हुई है।

साइड में एक स्टेज पड़ा स्टेज बना हुआ है पीछे एक सोफा भी पड़ा --

पार्किंग वाली जगह पे एक शेड भी डाला गया है ये शेड पूरा कवर है।

ये पीछे टीथ जॉर्जर के काफी पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

ये आदमी इन सब फ्लावर्स को दिखा रहा हैं।

कार की पीछे वाली डिग्गी भी खोल रखी है।

ये तस्वीर चर्च की है इस चर्च के बाहर क्रोस पर येशु मसीह की स्टैचू बना हुआ है साइड पर दो फरिश्ते भी बने हुए हैं ये सारे--

बाहर पोडियो के पास काफी बड़े गमले भी रखे हुए हैं इनके बाहर अंदर काफी हरे भरे वृक्ष भी लगे --

वीर है इस होटल में काफी बड़े टेबल्स पड़े हैं टेबल के आसपास काफी ब्लैक कलर की--

इसके बाहर विंडो ए_सी लगा हुआ है आसपास काफी गमले लगे हुएं हैं इन गमलों में काफी फ्लावर्स हरी भरी--

टेबल के ऊपर एक कीपैड फोन नजर--

इसके बीच में से एक सड़क मिट्टी की बनी जा रही है यहां से लोग चल कर आ--

ये एक टूटी फूटी बाइक नजर आ रही है।

नीचे काफी कच्ची जगह दिखाई दे रही है पीछे से एक गेट है जो कि बंद--